नीचे एक पोस्टर लगा हुआ है जो की ब्लू कलर का है एक टी_वी चल रहा है।

बाहर से कुछ लाइटें आ रही है।

यह एक फिगर है इसमें बहोत सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं ऊपर एक बहोत बड़ा झूमर दिखाई दे रहा है।

नीचे बहुत सारी लकड़ी की कुर्सियां बनी हुई है।

बहुत सारे आर्टिफिशियल समान दिखाई दे रहा है।

यह फिगर पेट्रोल पंप का है जहां पर सात आदमी दिखाई दे रहे हैं।

सभी के हाथो में कुछ कागज है जो अपना काम करवा रहे हैं।

एक रास्ते में जा रहे हैं एक आधे अधूरे दिख रहे हैं खड़ा है और एक बैठा हुआ है।

यह एक फिगर है जिसमें बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

एक खिड़की है जिसके ऊपर दो बोतल रखा हुआ है नीचे का सत्ता जो है वो वाइट कलर का है।

बहोत बड़ा फील्ड दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे कुछ पौधे भी लगे हुए है।

बहोत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

इसमें दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि खेल रहे हैं।

के बगल में एक सड़क है।

घर बना हुआ है एक झंडा भी दिखाई दे रहा है और बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक फिगर है जिसमें एक तालाब दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे चप्पल कार्टून के अंदर हैं और बहोत सारे बाहर में हैं।

वाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहे है।

व्हाइट बोर्ड के बगल में एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है।

नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

बगल में एक पंखा लगा हुआ है।

बगल में चार चेयर लगे हुए हैं व्हाइट कलर का।

कुछ लड़के पानी के अंदर है और एक लड़का साइड में खड़ा है।

यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं कुछ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जोकि पानी के अंदर हैं।

ऊपर में बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

आगे मे दो सीट है जिसमें दो आदमी बैठें हुए हैं एक फोन पे बात कर रहे हैं और एक बैठे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।